जो पत्थर की आती है ना वो और यहाँ पे कितनी बढ़िया ग्राफ़िक की गई यहाँ से शानदार एंड यूनीक चीजे है।

इस बैंक ऑफ़ बड़ौदा का ऑफिस है मतलब यह आप बैंक मान सकते हो ऑफिस मान सकते हो क्योकि यहाँ पे देखो ओपनिंग हुई है अभी अभी।

कितने अच्चो बलून है और पीछे एक दो खड़े भी है देखो वोह है कुछ शानदार एंड यूनिक चीजे पता नही क्या होरि या।

और देखो तो बहुत ही बड़ी शॉप है बहुत ही शानदार फ्रिज है ये क्या बोलते है इसको वो है ये।